यहाँ पे कुछ चेयरें रखी हुई दिखाई दे रही जिनका कलर रेड है और एक टेबल भी दिखाई दे रही ऊपर दे रहा।